ऊपर पंखा लग रहा है काफी बेंचेस रखे है टेबल हैबेंचेस में बच्चे बैठे है टीचर है।

रोड हैसामने कुछ इमारते नजर आ रही है।